यह बोहत ही बड़ा पत्थर है।

काफी सारे आदमी भी यहाँ पे आए हैं मछ्ली खरीद --

''यह एक न्यु वूमेन्स वर्ल्ड एंड किड्स की दुकान है।''

और हेल्थी रहते है। स्वस्थ --

शाम पांच बजे बंद होती है।

काफी सारे लोगों की भीड़ तालाब में --